ये बगीचा है और रोड है रोड पे एक लड़की चल रही है और तीन टंकी है रखी है पानी की एक टंकी अलग रखी है।

एक आदमी अकेला जा रहा है और एक आदमी झुका हुआ खड़ा है एक आदमी सही खड़ा हुआ है।

कांच की खिड़की लगी हुई और तार दिख रहा है नीचे दुकान है चीज़ की और पिलर दिख रहे हैं।

ये दुकान है लोकी रखी गई है नारियल पानी है तरबूज है और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं।

व्हाइट कलर के पिंक कलर के फिरोज़ी कलर के बादामी कलर के लाइट --